आपलोग लूंगी गमछा चादर पर्दा वगेरा देख रहे हैं इस दुकान में केवल लूंगा गमछा चादर बेडसीट कंबल-तंबल सब चीज मिलने लगता है और यहां पे हमलोग को जब भी जब ठंडी का मौसम आता है तो हमलोग कंबल खरीदने आते हैं और तब हम लोग का ठंडी का मौसम बहुत ही सुंदर तरीके से गुजरता है।

ये जो मार्केट लग रहा है मार्केट में बहुत प्रकार के तरह से दुकानें मिलते हैं जैसे ये आदमी ठेला पर फल बेच रहा है तो कोई बगल में कोई पुजा का सामान बेच रहा है और ये यहाँ पे --

ये तो जरुर कोई कॉलेज का दृश्य लग रहा है क्योंकि कॉलेज में उम्म बहुत प्रकार के सर मिनिस्टर सब आते है मिलने के लिए और यहाँ पर जो ये बहुत गाड़ियाँ देख रहे है ये कॉलेज के बाहर इसलिए लगाते है क्योंकि कॉलेज हमारा स्वच्छ रहे साफ रहे और हमेशा ये ऐसे ही साफ-सुथरा रहे और स्वच्छ हमारा कॉलेज हमेशा बने स्वच्छ भारत सुंदर भारत।

ये इतना ही खूबसूरत लगा पार्टी में हम लोग को बहुत मज़ा आता है और उनकी पार्टी जो दोस्त लोग मानते है तो दोस्त के साथ घुमने-फिरने में मज़ा आता है तो हम दोस्त हमेशा ही भाई होते है भाई --

और यहां पे जो राजमिस्त्री का काम राजमिस्त्री को बुलाते हैं और घर को अपना --